एक क्रिकेट ग्राउंड है। यहां पे क्रिकेट फुटबॉल सभी कुछ खेले जा सकते हैं।

यह एक एम्स हॉस्पिटल के गेट की तस्वीर है।

बिजली के खंबे भी दिखाई दे रहे हैं।

पूरा खोल दिया गया है पीछे से भी इसकी डिग्गी खुली हुई दिखाई पड़ रही है।

यह बहोत ही सुंदर दृश्य है एक हल्का सा पेड़ भी लटका हुआ दिखाई दे रहा है।

इससे यह बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है।

यह फोटो एक शाम की फोटो है।

यह एक दुकान की फोटो है जिसमें ब--

छोटे छोटे बच्चों के कपड़े भी--

यह कुछ लोग खरीदने के लिए आए हैं।

जिसमें छोटी छोटी दो चार दुकाने दिखाई--

है और आईने भी लगे हुए है लाइट --

और एक आदमी एक छोटी सी दुकान के बाहर प्याज बेच रहा है।

यह झूला बहोत ही सुन्दर और--

अट्रेक्टीव दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक फोटो है जिसमें ए--

तो है जो की प्योर वेज रेस्टोरेंट है।

जिसने एक नाई एक कस्टमर का--